किराने की दुकान में दो लड़के अंदर कुछ सामान ले रहे हैं बाहर एक आदमी ब्लैक पेंट और वाइट शर्ट में बाहर खड़ा है एक वाइट बोरी और एक ग्रे कलर की बोरी भी रखी हुई है एक स्टूल भी रखा है।

डेम के साइड में पानी है और आउटसाइड में कुछ पत्थर बगेरा पडे हुए है।

यहा एक खेत दिखाई दे रहा हे जहा पे बहोत सारे झाड वगैरा दिखाई दे रहे हे ऊपर व्हाइट कलर आसमान दिखाई दे रहा हे नीचे बहोत सारे छोटे-छोटे घाँस लगे दिखाई दे रहे हे ऑरेंज कलर की मिट्टी पड़ी दिखाई दे रही हैं।

यहा एक बहोत बडा मंदिर दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का जिस्मे बॉउन्ड्री और दीवारों पर कुछ लिखा दिखाई दे रहा है आजू बाजू कुछ झाड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक बहुत बड़ी नदी दिख रही हैं नदी के बाजू में एक पत्थर पे हेलमेट रखा दिखाई दे रहा हैं ऊपर अ-अह जामने और नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा हैं बाजू में पहाड़ दिखाई दे रहा हैं।